चित्र में रास्ता दिख रहा है तालाब दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है।

इस चित्र मे एक बड़ा मैदान दिख रहा है जहाँ पर हरियाली दिख रही है एक डंबर-डंपर दिख रहा है।

दुकान दिख रही है यहाँ पर बहुत-सा सामान बिक रहा है| किनारा बिक कि-किराना बिक रहा है नाइसिल पोडर बिक रहा है तेल बिक रहा है साबुन बिक रहे हैं बताशे बिक रहे हैं।

जिसके अंदर एक बड़ा-सा मैदान दिख रहा है जहाँ पर बगीचा लगा है बहुत से पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में एक बड़ा सा गुम्बद दिख रहा है जिस पर एक घोड़ा लगा है।

मे एक बड़ी सी दुकान दिख रही है जो मोबाइल की दुकान है जिसका नाम वैशाली मोबाइल शॉप है।

एक बड़ा तालाब दिख रहा है एक चबूतरा दिख रहा है।

हमें एक शॉपिंग काम्प्लेक्स दिख रहा है जहाँ पे जॉकी लिखा है नीचे फैशन लिखा है बड़ी-बड़ी दुकानें दिख रही है नीचे जीने दिख रहे हैं।